एक बेंच है एक कुर्सी है लाल कलर --

साइड में कई सारे पेड़ भी है।

रैंक में बहुत सारे कापी और किताब है।

हाईवे पर केहू पर बहोत सारे बोर्ड लगा हुआ है।

इसके आगे थोरा सा ग्राउंड है।

और पेर है पेर खरा है।

इसका देवाल उजला कलर से पेंट किया गया है।

सामने एक बड़ा मंदिर टाइप का देखने को मिल रहा है।